उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की --

डीजल एवं पेट्रोल ख़रीदा जाता है।

भगवान ईसा मसीह सबकी इच्छाओं को पूरा करे।

स्कूल में आर्ट अण्ड क्राफ्ट की एक्टिविटी हो रही है जहाँ पर --

और प्रदूषण भी नहीं फैलाती है।

अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में इसे खाया जाता है।

सामने एचडीएफसी बैंक का एटीएम दिख रहा है।

इस चित्र में किसी कंस्ट्रक्शन होती हुई बिल्डिंग के निरीक्षण का कार्य एक अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है।

मुख्य द्वार के ऊपर शेर बने हुए हैं।

किसी से अपनी फोटो खिचवा रहा है।

यहाँ एक सज्जन तालाब के किनारे चट्टानों पर बैठकर अपना फोटो खिचवा रहे हैं।

यह बैटमिंटन का मैदान है।

वर्त्तमान समय में इनका उपयोग सबसे अधिक किया जाना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा।